जे दुकान है दुकान के अंदर आदमी हैं।

और ऊपर मंदिर के पास जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं।

आगे एक लड़की खड़ी है पीछे एक घर बना हुआ है एक बाथरूम बना हुआ है।